अच्छी तरह के तरह-तरह के बाल कटाए जाते है। बाल की कटिंग होती है यहाँ अच्छी-अच्छी क्वालिटी में।

सस्ता और अछे-अछे फुल सस्ता दाम में मिलते है। तो आप याहा से अछे-अछे फुल वो भी सस्ते-सस्ते दाम में --

यह बोहोत पुराना घर है। ये भी जंगल में हे। ये देखिये कितना अच्छा घर है। ये बोहोत पुराना हो चूका इसमें मिट्टी- उट्टी चढ़ गई है।

और देखिये इधर सामने साइड -साइड में कितने अच्छे पेड़-पोधे लगे हुए हैं। यहाँ पे झूलने का भी दिया हुआ है।

देख सकते हैं दोस्तों यह एक मस्जिद है। इसमें बहुत सारे बंदे नमाज पढ़ रहें हैं।

और उसमें कितने अच्छे-अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। सब अच्छा दृश्य है यहाँ पे देखने --

देख सकते हैं दोस्तों यह एक आई.डी.बी.आई. बैंक है ।

क्या करें कुछ बीमारी ऐसी होती है उसमें यहाँ पे ठीक किया जाता है। इसमें --